बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है उस स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है सामने की तरफ बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ--

साइड मे घास दिखाई दे रहा है घास मे कुछ समान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक कागज दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा एक टैंक दिखाई दे रहा --

इस फोटो में एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है हवाई जा ही धरती पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसका कलर वाईट कलर और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जिसमे एक सीडी दिखाई दे रही है सीडी से कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे है सामने से एक लड़की दिखाई दे रही है।

एक अंकल दिखाई दे रहे है जो मशीन को चलाते हुए दिखाई दे रहे है। जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

फोटो मे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके हात मे एक मशीन रखी दिखाई दे रही है इसका कलर व्हाइट कलर की टीशर्ट पहनी हुई है और ब्राउन कलर का --

एक बोतल दिखाई दे रही है एक छोटासा पावडर का डब्बा दिखाई दे रहा है लाइट का बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक काँच दिखाई दे रहा है चिजे दिखाई दे रही है।

सामने के तरह एक अंकल दिखाई दे रहा है जो साइकल को चलाते दिखाई दे रहे है। एक अंकल नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे है जिनकी ट्शर्ट कलर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है।